और काउंटर में साबुन भी रखा हुआ है और तेल भी रखा हुआ दिखाई दे रहा--

और रूम का दीवार पे बहुत सारे आदमी का चित्र बनाया हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा टेंट लगाया गया है और इसमें बहुत सारा सजाया गया है और यह फूल से सजाया गया है।

यह एक रूम है रूम में दरवाजा भी लगाया गया है और रूम का दीवार सफेद है।

यह एक जिम करने वाला का रूम है रूम में बहुत सारा लाइट लगाया गया है।

यह एक कूट्टियां बनाया गया है कूट्टियां में भगवान का मूर्ति रखा गया है।

यहां पे ईटा को जोड़ा जा रहा है और बाहर में बहुत सारा घर भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया है इस स्टेज पर सीढ़ी भी बनाया गया है।

और स्टेज पर बहुत सारे व्यक्ति नाच रहे हैं।